इस फोटो में कास्टमेटिक की चीज नजर आ रही--

इस फो टो में कंप्यूटर नजर आ रहा--

इस फोटो पे जिला चिकित्साल नज़र आ रहा है।

इस फोटो पे मुझे ब्लू कीबोर्ड नजर आ रहा है।

मुझे मीनर नजर आ रहा है इस--

इस फोटो में मुझे गार्डन नजर आ रहा है इस--

इस फोटो पे मुझे घर नजर आ रहा है इस फोटो पे गेट नजर आ रहा--